तो फिर से वही चीज आंगनवाड़ी में बच्चे लोग जैसे कि देख रहे आप ग्लू से खेल रहे है ग्लू से खेल नही रहे कुछ-कुछ चिपका रहे है मतलब ये लोग प्रैक्टिकल शायद कर रहे है प्रैक्टिकल कर रहे है कुछ-कुछ बना रहे शायद ये लोग वो पेपर लेके।

पंखा भी लगा हुआ है बहुत मस्त है कुछ ऐ_सी वैसी भी लगा हुआ होगा क्योंकि ये --]

गाइज जैसे की आप यहां देख रहे हैं कार गैरेज में कार का वो वाशिंग चल रहा है और यहां पे एक आदमी जो है कार में पुट्टी कर रहा है क्योंकि उस गाड़ी में वहां खरोच लग गया होगा तो वहां कुछ उड़ गया होगा इसलिए वहां पे पुट्टी किया जा रहा है आप देख ही रहे होंगे उस टाइप से वहां पुट्टी किया जा रहा है।

बहुत अच्छे-अच्छे ड्राइंग बनाई हैं एगो लड़की को जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छा ड्राइंग बना है उसके पीछे गाइज एक ग्रिल लगा हुआ है ग्रिल के बाहर पौधे भी लगे हुए हैं ।अच्छे-अच्छे भाई--

इसमे कुछ लगा हुआ है जिससे वहां पे छेद किया जा रहा है गाइज ---